बहुत मस्त पौधा है नीचे लगे हैं हरा-भरा पेड़-पौधा है।

इसमें जो है छोटा-छोटा गमला है जो की सजावट बहुत मस्त है प्लास्टिक का फूल है बहुत सारा प्लास्टिक का फूल है जो की सजावट बहुत मस्त है बढ़िया लग रहा है।

जो की बहुत सारा पत्थर है पानी है और वहाँ आगे देखा जाए तो बहुत सारा ऊंच-नीच हरा - भरा दिखा रहा है जो की आसमान का भी नज़ारा दिखा रहा है बादल छा --

बीच में झोपड़ी भी है।

ये दुकान में बहुत प्रकार के शैम्पू है फेस वॉश है क्रीम है गुलाब जल है बहुत प्रकार के है बहुत चीज़ है एथी है।

मंदिर में बहुत सारे लाइट बरे हैं सुबह-सुबह बहुत सारे लाइट बरे --

काट रहा है कैंची कंघी से और देखिए किस तरह स्टाइल से काट रहा है बना रहा है।